थंडरबर्ड का उपयोग कैसे करें इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लॉन्चर में थंडरबर्ड शॉर्टकट कैसे जोड़ें
मेसेजेज को टैग कैसे करें तीव्र बटलाव कैसे करें और मैसेजेस को श्रेणीबद्ध और क्रमबद्ध कैसे करें
हम यह भी सीखेंगे160 सेव एएस और प्रिंट मेसेजेज फाइल अटैच करना
अकाईव मैसेजेस एक्टिविटी मैनेजर देखना
यहाँ हम उबंटू 1204 में मौजिला थंडरबर्ड 1301 का उपयोग कर रहे हैं
जैसा कि हम थंडरबर्ड का अक्सर उपयोग करते हैं इसके लिए शॉर्टकट आइकन बनाएँ
अब थंडरबर्ड शॉर्टकट आइकन को लॉन्चर पर ड्रैग और ड्रॉप करें
पहले दश होम पर क्लिक करें
सर्च फील्ड में थंडरबर्ड टाइप करें
सर्च फील्ड के नीचे थंडरबर्ड आइकन दिखाई देता है
इसे चुनें और बायें माउस बटन को न छोड़ें
अब आइकन को लॉन्चर पर ड्रैग और ड्रॉप करें
और बायें माउस बटन को छोड़ दें
इसे बंद करने के लिए दश होम पर क्लिक करें
लॉन्चर में थंडरबर्ड आइकन पर क्लिक करें
थंडरबर्ड विंडो खुलती है
जीमेल डॉट कॉम आईडी पर स्टूसरोन नीचे इनबॉक्स पर क्लिक करें
ध्यान दें कि कुछ मैसेजेस बोल्ड हैं
ये अपठित मैसेजेस हैं
गेट मैल आइकन पर क्लिक करें और गेट अल्ल न्यू मेसेजेज चुनें
हमें जी मेल अकाउंट से मैसेसेज प्राप्त हुए हैं
मानिए कि हम इन मैसेजेस को सेंडर द्वारा श्रेणीबद्ध करते हैं
कॉलम हैडिंग फ्रॉम पर क्लिक करें
मैसेजेस अब एक वर्णानुक्रमी क्रम में श्रेणीबद्ध हो गये हैं
फ्रॉम पर फिर से क्लिक करें
अब मैसेजेस विपरीत वर्णानुक्रमी क्रम में श्रेणीबद्ध हो गये हैं
अबSubject द्वारा श्रेणीबद्ध करें
सब्जेक्ट पर क्लिक करें
अब मैसेजेस सब्जेक्ट द्वारा श्रेणीबद्ध हो गये हैं
इस ट्यूटोरियल को रोकें और इस नियत कार्य को करने की कोशिश करें
डेट रिसीव्ड द्वारा मैसेसेज को श्रेणीबद्ध करें
आप मैसेजेस को टैग भी कर सकते हैं
इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं जिन मैसेजेस को आप फिर से खोलना चाहते हैं
आप समान मैसेजेस को एक साथ इकट्ठा करने के लिए भी टैग्स का उपयोग कर सकते हैं
अब मानते हैं कि आप एक मेल को महत्वपूर्ण के रूप में टैग करना चाहते हैं
इनबॉक्स पर क्लिक करें पहले मेल को चुनें
टूलबार से टैग आइकन पर क्लिक करें और इम्पोर्टेंट चुनें
ध्यान दें कि वह मेल लाल रंग में प्रदर्शित होता है
निचले पैनल पर देखें
मेल महत्वपूर्ण के रूप में टैग हो गया है
टैग को हटाने के लिए पहले मैल चुनें
टूलबार में टैग आइकन पर क्लिक करें और फिर से इम्पोर्टेंट पर क्लिक करें
इनबॉक्स में पहले मेल को इम्पोर्टेंट के रूप में और दूसरे मेल को वर्क के रूप में टैग करें
यदि हम केवल उन मेल्स को देखना चाहते हैं जो कि राइट पैनल में टैग किये गये हैं
क्या यह करना संभव होगा
आप तीव्र बदलाव और मैसेसेज को देखने के लिए क्विक फिल्टर टूलबार का उपयोग कर सकते हैं
टैग किये गये मैसेसेज को देखने के लिए क्विक फिल्टर टूलबार में टैग्ड आइकन पर क्लिक करें
केवल हमारे द्वारा टैग किये मैसेजेस प्रदर्शित होते हैं
अब टैग्ड आइकन पर फिर से क्लिक करें
अब हम सभी मेल्स देख सकते हैं
अब मैसेज थ्रेड्स के बारे में सीखते हैं
मैसेज थ्रेड्स क्या हैं
संबंधित मैसेज जो क्रम या वार्तालाप के रूप में प्रदर्शित होते हैं
मैसेज थ्रेड्स कहलाते हैं
हम मैसेज थ्रेड्स का उपयोग एक सतत प्रवाह में एक पूरी वार्तालाप के रूप में संबंधित मैसेसेज को देखने के लिए करते हैं
अब सीखते हैं कि यह कैसे करें
मेसेज थ्रेड्स आइकन को प्रदर्शित करने के लिए इनबॉक्स के बायें कोने में क्लिक करें
मेल्स वार्तालाप के रूप में प्रदर्शित होते हैं
पूर्ण वार्तालाप देखने के लिए कॉरेस्पांडिंग थ्रेड के आगे थ्रेडिंग सिम्बोल पर क्लिक करें
पूर्ण वार्तालाप मैसेज प्रि व्यू पैनल में दिखाई देता है
थ्रेड व्यू से बाहर आने के लिए केवल थ्रेड आइकन पर फिर से क्लिक करें
अब सीखते हैं कि मेल को फोल्डर में सेव और फिर प्रिंट कैसे करें
इस ट्यूटोरियल के प्रयोजन के लिए हमने डेस्क्टॉप पर एक नया फोल्डर बनाया है
और इसे सेव्ड मेल्स नाम दिया है
पहला मेल चुनें और सेव करें
मेल पर डबल क्लिक करें
यह अलग टैब में खुलता है
टूलबार से फाइल सेव एएस और फाइल पर क्लिक करें
सेव मेसेज एएस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
डेस्क्टॉप के लिए ब्राउज करें और फोल्डर सेव्ड मेल्स चुनें
सेव पर क्लिक करें
मैसेज फोल्डर में सेव हो गया है
सेव्ड मेल्स फोल्डर पर जाएँ
इस पर डबल क्लिक करें और इसे खोलें
मेल गेडिट में टेक्स्ट फाइल के रूप में खुलता है
बंद करें और इस फाइल से बाहर निकलें
आप टेम्पलेट के रूप में भी मैसेज सेव कर सकते हैं
टूलबार से फाइल सेव एएस और टेम्पलेट्स पर क्लिक करें
मैसेज थंडरबर्ड में टेम्पलेट्स फोल्डर में सेव होता है
थंडरबर्ड दायें पैनल में टेम्पलेट्स फोल्डर पर क्लिक करें
मेल चुनें और डबल क्लिक करें
यह मूल मेल में सूचीबद्ध संपर्क से पूरित टो एड्रैस फील्ड के साथ अलग टैब में खुलता है
आप अब इस मेल में कंटेंट में बदलाव कर सकते हैं संपर्क जोड़ें या डिलीट करें और इसे भेजें
सब्जेक्ट में 1 जोड़ें
टेम्पलेट को बंद करने के लिए टैब के ऊपर बायें कोने पर एक्स आइकन पर क्लिक करें
सेव मेसेज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
डोंट सेव पर क्लिक करें
अब मैसेज को प्रिन्ट करें
इनबॉक्स पर क्लिक करें और दायें पैनल से दूसरा मेल चुनें और इस पर डबल क्लिक करें
यह नये टैब में खुलता है
मुख्य मेन्यू में फाइल पर जाएँ और फिर प्रिंट चुनें
प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
हम इस मेल को छायाचित्र के रूप में ओरिएंटेशन के साथ एक आ4 शीट पर प्रिन्ट करेंगे और इस मेल की दो कॉपी बनायेंगे
पेज सेटअप टैब पर क्लिक करें
पेपर साइज फील्ड में ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें और आ4 चुनें
ओरिएंटेशन फील्ड में ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें और पोर्ट्रेट चुनें
अब जनरल टैब पर क्लिक करें
कॉपीज फील्ड में 2 प्रविष्ट करें
प्रिंट पर क्लिक करें
यदि आपका प्रिंटर सही कंफिगर है तो मेल अब प्रिंट करना शुरू करना चाहिए
प्रिंट डायलॉग बॉक्स से बाहर आने के लिए कैंसेल पर क्लिक करें
मैल टैब को भी बंद करें
अब याहू अकाऊंट पर संलग्न के रूप में विडियो भेजें
एक नया मैसेज लिखें
मेन्यू बार में राइट पर क्लिक करें
न्यू मेसेज विडों प्रदर्शित होती है
टो फील्ड में याहू आईडी का पहला अक्षर टाइप करें जो कि एस है
ध्यान दें कि याहू मेल आईडी स्वतः ही प्रविष्ट हो जाता है
सब्जेक्ट फील्ड में वीडियो अटैचमेंट टाइप करें
टूलबार में अटैच पर क्लिक करें
अटैच फाइल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
डेस्क्टॉप से व्हाट इस आ स्पोकेन tutorialरार फाइल चुनें
ओपन पर क्लिक करें
फाइल संलग्न हो गई है और अटैच्मेंट ऊपर दायें कोने पर प्रदर्शित होता है
सेंड पर क्लिक करें
अपने याहू अकाऊंट पर लॉगिन करें
हमें अटैच्मेंट के साथ मैसेज प्राप्त हुआ है
अब याहू अकाऊंट को बंद करें
हमें एक महत्वपूर्ण मैसेज प्राप्त हो सकता है
जिसका हम उल्लेख कर सकते हैं
लेकिन यहाँ इनबॉक्स में बहुत सारे मेल हो सकते हैं जिस कारण यह अव्यवस्थित हो सकता है
थंडरबर्ड आपको ऐसे मैसेजेस को संग्रह करने की सुविधा देता है
पहले हमें आर्काइव सेटिंग जाँचनी होगी
बायें पैनल में स्टूसरोन जीमेल अकाऊंट पर क्लिक करें
दायें पैनल में अकाउंट्स के नीचे व्यू सेटिंग्स फोर थिस अकाउंट पर क्लिक करें
अकाउंट्स सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
बायें पैनल में स्टूसरोन जीमेल अकाऊंट पर क्लिक करें कॉपीज और फोल्डर्स पर क्लिक करें
मेसेज आर्काइव्स ऑप्शन्स सक्षम हो गये हैं
ये ऑप्शन्स फोल्डर निर्धारित करते हैं जिसमें मैसेजेस संग्रहीत हैं
यदि ये आप्शन्स सक्षम नहीं हैं तो कीप मेसेज आर्काइव्स इन बॉक्स को चेक करें
ऑप्शन आर्काइव्स फोल्डर ओन स्टूसरोन एटी gmailकॉम चुनें
ओक पर क्लिक करें
अब स्टूसरोन जीमेल अकाउंट के नीचे इनबॉक्स पर क्लिक करें
तीसरे मैसेज का संग्रह करें
दायें पैनल से इसे चुनें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए राइट क्लिक करें और आर्काइव चुनें
मैसेज स्टूसरोन जीमेल अकाउंट के नाचे आर्काइव्स फोल्डर में स्थानांतरित हो गया है
यह अब इनबॉक्स में प्रदर्शित नहीं होता है
और क्या यदि हम एक्शन्स देखना चाहते हैं जो हमने थंडरबर्ड का उपयोग करके किये हैं
यह आसान है
एक्टिविटी मैनेजर थंडरबर्ड में किये गये एक्शन्स की सूची प्रदर्शित करता है
मुख्य मेन्यू में टूल्स और एक्टिविटी मैनेजर पर क्लिक करें
एक्टिविटी मैनेजर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
आप अब सभी ईमेल गतिविधि को चेक करने के लिए सूची देख सकते हैं
एक्टिविटी मैनेजर डायलॉग बॉक्स को बंद करें
थंडरबर्ड विंडो के बायें कोने में रेड क्रास पर क्लिक करके थंडरबर्ड से बाहर आएँ
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि लॉन्चर में थंडरबर्ड शॉर्टकट कैसे जोड़ें मेसेजेज को टैग कैसे करें तीव्र बटलाव कैसे करें और मैसेजेस को श्रेणीबद्ध और क्रमबद्ध कैसे करें
हमने यह भी सीखा कि मेसेजेज सेव एएस और प्रिंट कैसे करें फाइल अटैच कैसे करें
मैसेज आर्काइव कैसे करें एक्टिविटी मैनेजर कैसे देखें
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
थंडरबर्ड लॉगिन करें
मेसेज थ्रेड देखें
मैसेज सेव और प्रिंट करें
एक ई मेल चुनें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए राइट क्लिक करें
इसमें सभी ऑप्शन्स जाँचें
एक्टिविटी मैनेजर डायलॉग बॉक्स देखें
थंडरबर्ड को लॉग आउट करें
एक्टिविटी मैनेजर डायलॉग बॉक्स को फिर से चेक करें जब आप लॉगिन करते हैं
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद